लाल कलर का लेटर बॉक्स है उसको सफेद कलर कहा गया हैऔर वहाँ पे अब बहुत सारे पेड़ है जोकि हरे भरे है।

और स्कूटी है और यहां पे कुछ लोग हैं।

ए एक अ बाग है और यहां पे फुटपाथ भी हैं और यहां पे बाघ में कुर्सियां है टेबल है और यहां पे--

अ पेड़ है और यहां पे रेड टेंट दिया गया है और यहां पे--

ग्रीन के पिलर्स रख लगे रखे हैं और यहां पे लकड़ी के दरवाजे हैं।

ब्लू वाइट और रेड कलर के और यहां पे एक शॉप है उस पेप्सी लिखा हुआ है।

अ टी शर्ट पहनी है और ग्रे पैंट पहने उसके पैरों में भी चप्पल है।

अ इनको रस्सी से बांधा गया है और छत पे टीन हैं और दो खिड़कियां है ऊपर।

ये एक शॉप है और यहां पे फूल खिले अ फूल है और यहां ये--

नवल लाइट ब्राउन कलर का एक कुर्सी पर बैठा हुआ है पीछे से कुछ किताबें नजर आ रही हैं।

और पत्थर बहुत सारे और--

और यहां पे बहुत सारी लाइटर भी हैं।

एक गाड़ी है और एक आदमी है यह सड़क पे जा रहा है और इस आदमी ने लाल कपड़ा पहना है।

टेबल पे एक लैपटॉप है और कुछ पेपर नजर आ रहे हैं और एक ट्रॉफी रखी हुई है और यह--

और बालों में गजरा पेहना है और ह नीला रंग की साड़ी है।

ये बोहोत अच्छे से व्यायाम कर रहे हैं कमरा में ए_सी है और दरवाजा बंद है।

और कमरे का कलर वाइट किया गया है और--

शर्ट और पैंट पहना है उसने व उसके सफेद बाल हैं।

और वहां पे गीली सड़क है बारिश पड़ी है।

एक आदमी ने ब्लू कलर की शर्ट और पैंट पहना ब्राउन कलर --

क्या हाल है और यहां पर कुछ--

इनके बालों का रंग काला है ऊपर फैन लगे हुए हैं।

और सामने एक डेस्क पे बोर्ड लगा हुआ है एक पल्क लगा हुआ है।

है काफिस है और यहां पे अलमारियां हैं।

और अलमारियों में कोई चीजें भरी हुई है और एक टेबल है।

लाल कलर का उसपे एक गिलास है और एक डब्बे दो है।

और उसके बालों का रंग काला है उसने खब शूज पहना हुआ है।

एक दुकान लग रही है और यहां पे--

ओ-और यहां पे बहुत सारी चीजें हैं।

यहां के बेंचेस ब्लैक कलर के दरवाजे सफेद है और यहां का पेड़ भी सफेद किया हुआ है।

यह ब्लैक और रेड कलर का कपड़े है।

सामने भगवान है और उसने मुकुट पहना हुआ है और इसके साथ वो--

यह एक वेटिंग रूम है और यहां पे टेबल है कुर्सी है कुर्सीयां काले कलर की है टेबल काला कलर के और एक अलमारी है ओ भी काला कलर की सामने एक बोर्ड है उसपे --